लिबर ऑफिस calc के परिचय पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में निम्न के बारे में सीखेंगे
लिबर ऑफिस calc के परिचय के बारे में
लिबर ऑफिस calc में विविध toolbars के बारे में
calc में नया document कैसे open करें
मौजूद document कैसे open करें
calc में document सेव और बंद कैसे करें
लिबर ऑफिस calc लिबर ऑफिस suite का spreadsheet घटक है
जिस तरह writer text इंफॉर्मेशन के साथ व्यापक रूप से कार्य करता है spreadsheet संख्यात्मक इंफॉर्मेशन के साथ व्यापक रूप से कार्य करता है
यह संख्याओं की भाषा के लिए एक सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है
यह microsoft office suite के microsoft excel के समान है
यह free और open source सॉफ्टवेयर है अतः यह copied पुनःउपयोग और वितरित मुफ्त में किया जा सकता है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
यहाँ हम अपने operating system के रूप में gnu/लिनक्स और libreoffice version 334 का उपयोग कर रहे हैं
यदि package पास लिबर ऑफिस suite संस्थापित नहीं है calc synaptic package manager का उपयोग करके संस्थापित किया जा सकता है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
पूर्ण निर्देश लिबर ऑफिस suite के पहले tutorial में उपलब्ध हैं
याद रखें कि जब संस्थापन कर रहे हों calc के लिए complete संस्थापन का उपयोग करें
यदि आपके पास लिबर office suite पहले से ही संस्थापित है आप screen के top left में applications option और फिर office और फिर libreoffice option पर क्लिक करके लिबर office calc पायेंगे
विभिन्न लिबर ऑफिस घटकों के साथ एक नया dialog box खुलता है
लिबर ऑफिस calc access करने के लिए नये dialog box में spreadsheet घटक पर click करें
यह मुख्य calc window में एक खाली document खोलेगा
अब चलिए calc window के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं
calc में document को workbook कहा जाता है एक workbook में spreadsheets नामक कई sheets होती हैं
प्रत्येक spreadsheet में cells rows और columns में व्यवस्थित होती हैं प्रत्येक rows संख्या के द्वारा और प्रत्येक columns एक अक्षर के द्वारा निर्धारित है
एक विशेष cell जो row और column के एक इन्टर्सेक्शन को संदर्भित करती है इसकी उपयुक्त row संख्या और column अक्षर के द्वारा पहचान होती है
cells फेरबदल और प्रदर्शन के लिए कई अधिक data elements और text संख्याएँ सूत्र जैसी जानकारी रख सकती हैं
प्रत्येक spreadsheet में कई शीट्स होती हैं और प्रत्येक sheets में एक million से कुछ अधिक rows और एक हजार columns हो सकते हैं जो कि हमें एक single sheets में एक billion से अधिक या सौ crore cells प्रदान करती है
calc window में विविध toolbars होते हैं जैसेटाइटल bar menu bar standard bar formatting bar formula bar और status bar
इस toolbars के अलावा यहाँ ऊपर name box और input line name दो अतिरिक्त fields हैं
toolbars सबसे अधिक उपयोगी options को समाविष्ट करते हैं जिन्हें हम आगे के tutorials में सीखेंगे
अब आप spreadsheet के बायें किनारे पर sheet1 sheet 2 और sheet 3 नामक तीन sheet tabs देख सकते हैं
यह tabs white टैब युक्त visible sheet के साथ प्रत्येक व्यक्तिगत sheet के लिए access सक्षम बनाते हैं
अन्य sheet टैब पर क्लिक करके वह विशेष sheet दिखाता है और वह टैब सफेद में बदल जाता है
spreadsheet का मुख्य भाग वह है जहाँ grid के form में विविध cells युक्त data एंटर होता है प्रत्येक cells column और row के intersection पर है
columns के top में और rows के बाईं ओर के आखिर में अक्षरों और numbers युक्त gray boxes की श्रृंखला हैं ये columns और rows headers हैं
columns a पर शुरू होता है और right की ओर जाता है तथा rows 1 पर शुरू होकर नीचे की ओर जाती है
ये column और row headers cell संदर्भ बनाते हैं जो name box field में दिखाई देते हैं
calc में विविध घटकों के बारे में सीखने के बाद हम अब सीखेंगे कि लिबर ऑफिस calc में नया document कैसे open करें
आप standard toolbar में new icon पर क्लिक करके या menu bar में file option पर क्लिक करके और फिर new option पर क्लिक करके और आखिर में spreadsheet option पर क्लिक करके नया document open कर सकते हैं
आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में नया calc window opens होता है
अब हम सीखेंगे कि spreadsheet में personal finance tracker कैसे बनाएँ
चलिए देखते हैं कि spreadsheet में कुछ cells में data enter कैसे करें
अतः spreadsheet की पहली sheet में cell संदर्भित a1 पर click करें
चलिए heading sn type करते हैं जो कि विषय के serial number को संबोधित करता है जिसे हम spreadsheet में प्रदर्शित करेंगे
अब cell संदर्भित b1 पर click करें और अन्य heading items type करें
सभी item चीज के names इस heading में होंगे जिनका names spreadsheet में उपयोग करेंगे
उसी तरह एक के बाद एक c1 c1 c1 c1 और c1 cells पर click करें और क्रमानुसार cost spent received date और account headings लिखें
हम बाद में इन प्रत्येक कॉमल्स में data insert करेंगे
एक बार आपकी spreadsheet लिख कर हो जाय आपको इसे भविष्य में उपयोग के लिए सेव करना चाहिए
इस file को सेव करने के लिए menu bar में file पर click करें और फिर save as option पर click करें
screen पर एक dialog box दिखाई देता है जहाँ आपको name field में आपकी file का name enter करना आवश्यक है
अतः personal finance tracker file name enter करें
name field के नीचे आपके पास save in folder field है जहाँ आपको folder का name enter करना आवश्यक है जो आपकी सेव की हुई फाइल में समाविष्ट होगा
अतः save in folder field में down arrow पर click करें
folder options की एक सूची दिखाई देती है यहाँ हम folder चुन सकते हैं जहाँ हम अपनी file सेव करना चाहते हैं
हम desktop option पर click करते हैं
अतः file desktop पर so होगी
अब dialog box में file type option पर click करें
यह आपको file type options या file extensions की सूची दिखाता है जिसमें आप अपनी file सेव कर सकते हैं
लिबर ऑफिस calc में default रूप से file type odf spreadsheet है जो dot ods extension प्रदान करता है
odf का अर्थ है open document format जो कि एक open standard है
dot odsफॉर्मेट में सेव करने के अतिरिक्त जो कि लिबर office calc में खुल सकता है आप अपनी file dot xml dot xlsx और dot xls format में भी सेव कर सकते हैं जो कि ms office excel program में खुल सकती है
dot csv अन्य प्रचलित file extension है जो अधिकतर programs में opens होता है
इसका उपयोग प्रायः text file format में spreadsheet data को संचित करने के लिए किया data है जो कि file का size बहुत अधिक कम करता है और आसानी से स्थानांतरित होता है
हम odf spreadsheet option पर click करेंगे
आप देखेंगे कि odf spreadsheet और कोष्ठक में dot ods file type file type option के ठीक आगे प्रदर्शित होता है
save button पर click करें
यह आपको टाइटल bar पर आपके पसंद के filename और extension के साथ calc window पर वापस लाता है
उपर्युक्त चर्चित formats के अतिरिक्त spreadsheet dot html format में भी सेव की जा सकती है जो कि web पेज format है
यह उसी तरह हुआ है जैसा कि पहले समझाया गया है
तो menu bar में file option पर click करें और फिर save as option पर click करें
अब file type option पर click करें और फिर html document और braces के भीतर पर openoffice dot org calc option पर click करें
यह option document में dot html extension देता है
save button पर click करें
अब dialog box में ask when not saving in odf format option को चुनें
आखिर में keep current format option पर click करें
आप देखेंगे कि dot html extension में document सेव हो गया है
इस format का उपयोग तब किया जाता है जब हम अपनी spreadsheet को web पेज के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसे web browser program के द्वारा opened कर सकते हैं
document को standard tool bar में export directly as pdf option पर क्लिक करके pdf format में export किया जा सकता है
पहले के अनुसार स्थान का चुनाव कर लें जहाँ आप सेव करना चाहते हैं
विकल्प के रूप में आप menu bar में file option पर क्लिक करके और फिर export as pdf option पर क्लिक करके भी यह कर सकते हैं
दिखाई देने वाले dialog box में export option पर click करें और फिर save button पर click करें
एक pdf file बनेगी
चलिए file और फिर close पर क्लिक करके इस document को बंद करें
आगे हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस calc में मौजूदा document को कैसे open करें
एक मौजूदा document को open करने के लिए सबसे ऊपर menu bar में file menu पर click करें और फिर open option पर click करें
screen पर एक dialog box दिखाई देता है
यहाँ वह folder ढ़ूंढें जहाँ आपने अपना document सेव किया है
अतः dialog box के बायें किनारे पर small pencil button पर click करें यहाँ type a file name है
यह location bar field को opens करता है
यहाँ file का name type करें जिसे आप ढूंढ रहे हैं
अतः हम file का name personal finance tracker type करते हैं
अब दिखाई देने वाली file names की सूची में से personal finance tracker dot ods चुनें
अब open button पर click करें
आप देखेंगे कि file personal finance tracker ods opens होती है
विकल्प के रूप में सबसे ऊपर toolbar में open icon पर क्लिक करके और आगे की प्रक्रिया उसी तरह करके आप मौजूदा file को open कर सकते हैं
आप files को dot xls और dot xlsx extensions में भी open कर सकते हैं जो calc में microsoft excel द्वारा उपयोगित हैं
आगे आप देखेंगे कि उसी file के तहत फाइल में परिवर्तन कैसे करें और इसे सेव कैसे करें
अतः चलिए bold headings बनाकर file में बदलाव करते हैं और font size बढ़ाते हैं
तो पहले cell संदर्भित a1 पर click करें mouse के बायें button पर click करके sn cost spent received date और account headings चुनें और फिर इसे सभी headings के साथ ड्रैग करें
यह text को चुनेगा और इसे चिन्हांकित करेगा अब बायें mouse button को छोड़ दें text अभी भी चिन्हांकित होना चाहिए अब standard toolbar में bold icon पर click करें
headings इस प्रकार bold होती हैं
अब चलिए headings का font size बढ़ाते हैं
अतः headings को चुनें और फिर toolbar में font size field पर click करें
drop down menu में 14 चुनें
तो आप देखेंगे कि headings का font size बढ़ गया है
अब हमारे द्वारा उपयोगित font स्टाइल बदलते हैं
अतः font name field में down arrow पर click करें और फिर bitstream charter font name को चुनें
आवश्यकतानुसार बदलाव करने के बाद save icon पर click करें
आपने आपना document सेव कर दिया और आप इसको बंद करना चाहते हैं तो केवल menu bar में file menu पर click करें और फिर close option पर click करें
यह आपकी file को बंद करता है
अब हम लिबर ऑफिस calc पर spoken tutorial की समाप्ति की ओर हैं
हमने निम्न सीखा है संक्षेप में
लिबर ऑफिस calc का परिचय
लिबर ऑफिस calc में विविध toolbars
calc में नया document कैसे open करें
मौजूदा document कैसे open करें
calc में document सेव और बंद कैसे करें
व्यापक नियतकार्य
spreadsheet practice ods name से इसे सेव करें
serial number name department और salary के रूप में headings लिखें
headings को रेखांकित करें headings का font size 16 तक बढ़ाएँ file को बंद करें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
spoken tutorial project team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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर संपर्क करें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
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे की और से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद